यहाँ पे ये कोई पॉलिकताल स्तल पार्क जैसा लग रहा है यहां यहां पे कुछ लोग यहां पे बैठे हुए है कुछ लोग दोड़ते घूमते हुए नजर आ रहे है यहां पे अच्छा दृश्य देख रहे हैं यह तस्वीर तब ली गई है जब यहां पे सुबह के टाइम ली गई है जब लोग यहां पर आते जाते नजर आ रहे हैं।

और स्टेशन एक दम खाली है कोई भी भीड़ भाड़ कुछ नहीं हैएक दम दो आदमी आते हुए नजर आ रहे है लगता है ये लोग ट्रेन का वैट कर रहे हो|